ये एक रेस्टोरेंट है। यहाँ ये रेस्टोरेंट भी है होटल भी है दोनों चीजे हैं।

यहाँ आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। स्वीज होटल है ये इसका नाम। प्लीज ज्वाइन अस हमारा होटल बोहोत अच्छा है। प्लीज आइये ज्वाइन --

ये जिम है। ये जिम के सारा सामान है। यहाँ आपको डम्बल मिलेगा आपको एक्सरसाइज करने के लिए ये बोहोत अच्छी जगह है। तो आप लोग इस जिम मे जरूर आइएगा।

ये एक टॉइलेट है ये एक ऑफिस है इसमे आपको अलग अलग अपार्टमेंट अलग अलग आपके खुद के बैठने की जगह मिल जाएगी | यह एक ड्रॉर भी है |

पेड़-पौधे हैं ये दो फ्लोर का है काफी बडा है। मुजफ्फर मेडिकल कॉलेज है एक है हरा-भरा पेड़-पौधे हैं

यह एक बहुत अच्छा इंस्टिट्यूट है यह बीस --

ये एक बैटरी रिक्शा है ये काफी अच्छा बैटरी रिक्शा है।